कुछ वैसे भी समान है व इसमें काउंटर भी है उस काउंटर पे शीशा चढ़ा हुआ है।

नया सामान मेज पर है उस मेज पे नीचे पर्दा भी है।

ये सीढ़ी भी खड़ी हुई है मे कुछ फट्टे भी रखे हुए हैं।

ऊपर साइड में टीन की छत भी है।

ओल्ड साइड में पीले रंग का मकान भी है।

यह एक इस डॉक्टर की दुकान है।